बिल्डिंग का रंग पीला है। यह कॉलेज बोहोत बड़ा है।

और बोहोत सारे हरे-हरे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।